दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे बहुत अच्छा सारा पार्क है बहुत अच्छा पार्क है और यहां पे इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

टाइम है बहुत अच्छे अच्छे व्यूज हैं यहां पर तो जरूर आइए हमारे साथ देखने।

उसका काम कंस्ट्रक्शन्स मे चल रहा है मैं अपनी छत पर खड़ी हूं छत पर से --

और कही जाने की तो जरूरत ही नहीं है आप देख पा रहे है कितने सारे फ्रूट्स है यहां पर --

वेरी नाइस मैंने देखा है इसे बहुत अच्छा कैफे है ये आप जरूर आइए।

बारिश है पेड़ पौधे हैं बहुत अच्छा व्यू लग रहा है चलिए चलते हैं।

इंश्योरेंस की सुविधा होती है तो अगर आपको करवाना है तो आप यहां पर जरूर आ कर पता करें।

और बहोत तरह तरह के आइटम वाली शॉप पे स्टील के आइटम --

खाना है इसका बहोत अच्छा होटल है ये जोमैटो सुविधा भी है घर बैठे खाना भी आप आराम से मंगवा सकते है।